टी_वी के अंदर एक महिला का फोटो दिख रहा है यहां पे बहुत सारे पुतले दिख रहे है।

यहां पे एक दुकान का दृश्य रहा है दुकान के ऊपर एक छपरा दिख रहा है छपरा के बगल में दो लोहे के दंटे लगे हुए हैं और बगल में बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

यहां पे एक घर का दृश्य दिख रहा है घर के अन्दर एक रूम का दृश्य दिख रहा है।

पीछे में बहोत सारे पेड़ दिख रहा है।

यहां एक घर के ऊपर कपड़ा दिख रहा है यहां कुछ घास दिख रहे हैं।

हाथी का पुतला काले रंग का है उसमें दो दांत दिख रहे हैं जो उजले रंग के हैं।

यहां पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है हाथी की सूंड पर।

ऊपर में रैक दिख रहा है यहाँ पे रस्सी के ऊपर कुछ पेज लगे हुए दिख रहे--

स्टेज के ऊपर बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं आदमी ने एक बैग पहना हुआ है और कुछ महिला दिख रही है।

यहां पे कुछ काले रंग के चटाई दिख रहे है यहां पे आदमी के हाथ में चूड़ी दिख रहा है बगल में एक औरत के हाथ मे चुड़ी है यहां पे कुछ खिड़कियां दिख रही है।

खिड़की के ऊपर कुछ लाल कलर के परदे लगे हुए हैं।

खिड़की के ऊपर लाल कलर का परदा लगा हुआ है।

एक स्विच बोर्ड दिख रहा है जिसके अन्दर तार लगा हुआ है काले रंग का।

यहां पे एक लाइट दिख रहा है उसके बगल में एक स्विच बोर्ड है उसके अंदर एक रेड कलर लाइट दिख रहा है।

यहां पे कुछ शैंपू टंगे हुएं दिख रहे हैं यहां पे कुछ कंघी दिख रहा हैं एक कंघी रेड कलर का है।

यहां पे दो चेयर दिख रहे हैं जो ब्राउन कलर का है।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

यहां पे एक आदमी कंबल को ओढ़ा हुआ है।

बगल में एक बाइक दिख रहा है बाइक भी कला है।

यहां पे साइकिल के दो हैंडल दिख रहे हैं।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

यहां पे कुछ बॉक्सेस रखे हुए दिख रहे है यहां पे कुछ फ्रीज दिख रहे है जो अलग अलग प्रकार के है जिसके ऊपर फूल का चित्र बना हुआ है।

यहां पे बहुत सारे गुब्बारा दिख रहे हैं जो अलग अलग कलर के हैं गुब्बारा व्हाइट कलर दिख रहा है।

रूम के अंदर कुछ चेयर दिख रहे हैं जो काले रंग के हैं।

बगल में कुछ कांच के गिलास लगे हुए दिख रहे हैं ऊपर में एक लाइट जल रहा है।

ऊपर में एक घड़ी दिख रहा है।

फ्लावर के उ अंदर बहुत सारे महिला फ्लावर को तोड़ रही दिख रही है ।

यहां पर एक आदमी बैठकर फ्लावर तोड़ रहा है और एक आदमी गमछा पहना हुआ है।